खा रहे हैं गायों का रंग अलग अलग है।

इसमें विवो रियलमी ओप्पो के बॉक्सेस हैं।

ये सारे लोग व्हाइट कपड़े--

गमलों में अलग अलग प्रकार के बुटे हैं।

इसमें काफी सारे जींस शर्ट्स पड़े हैं।

यहां डॉक्टर के बैठने के लिए--

बट्ठल बरकर ले जा रहा है।

ये लड़का जिम मे खड़ा है।

एंड नीचे शिवलिंग पड़े हैं ये सारे मंदिर--

पैलेस की तस्वीर है इसमें काफी लोग खड़े हैं।